यहाँ पे नीले और काले रंग की कुर्सियां भी बहुत सारी पड़ी है।

यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी हैं ।

यहा पे कुछ सीमेन्ट की बोरिया ओर ईट के इटे लगी हुवी हैं।

यहां पर कुछ आदमी आपस मे बाते कर रहे है। इसके अंदर कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई है।

जिनके ऊपर कुछ छप्पर छाए हुए हैं इसके आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे है।